वो भी देखा जा सकता है और यहाँ पे कुछ लोग इधर-उधर है।

स्टेट बैंक का ए.टी.एम. है यहाँ पे लोग पैसे निकालने के लिए खड़े है यहाँ पे भीड़ देखिए यहाँ पे कितने लोग पैसे निकालने के लिए खड़े हैं ।

और इसका सीन भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है । सब टीचर लोग है जो अपने स्कूल में फ़ोटो खीचा रहे --.

कुछ बच्चे बच्चियां इधर-उधर भी कर रहे हैं और सब एक पोजिशन के साथ में अपने डांस को कर रहे हैं ।

ये एक कपड़े का दुकान है। यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं डिब्बे में पैक किये हुए और यहाँ पे --